मिट्टी बाहर दिखाई दे रही है मिट्टी का ढ़ेर लगा हुआ है।

आसमान का रंग सफेद और काल दिखाई दे रहा है।

कैमरे भी लगे हुए हैं बाहर पोस्टर भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है यहां पे मशीन रखी हुई है।

पीछे एक मकान है दीवाल पे इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर के परिसर में लिखा हुआ है।